फोटो में एक आदमी खड़ा होकर अपना फोटोशूट करा रहा है। जिस वो एक डंडे के पास खड़ा है और उनका हेलमेट यहाँ साईड में निचे जमीन पर रखा हुआ है औ चारो तरफ पेड़ ही पेड़ हैं।

ये एक प-बिल्डिंग की तस्वीर है।

ये एक बिल्डिंग है। बहोत बड़ी है जिसमें बहोत सारे फ्लाइट्स हैं। सबमें लाईट जल रही है। कालोनी का गेट इस वक्त बंद है।

बोहोत सारे लोग मेले को देख रहे हैं इसमें मुझे बोहोत सारी दुकाने भी दिखाई दे रही है | सारी बोहोत सारी लाईटे लगी हैं और ये बोहोत सुन्दर लग रहा है।

यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है। एक टॉवर दिखाई दे रहा है और एक टैक्टर ट्राली भी नज़र आ रही है। बोहोत सारे पेड़ बोहोत सारे घर नज़र आ रहे हैं। ये गाँव का इलाका लग रहा है।

यहाँ पर एक पानी नजर आ रहा है और साइड में कोकोनेट ट्रीस लगे हुए है एक ठे लैंप लगी है।

रेत की ढेरी रखी हुई है। यहाँ पर शायद कुछ काम भी चल रहा है और बिलकुल सुनसान है ये रोड ।

ये एक जेन्ट्स सलून कि तस्वीर है जिसका नाम है पेरिस जेंट्स सलून और यहाँ पर बॉयज की कटिंग होती है।

इसमें बहुत सारी कारे खड़ी हुई है लाइनवाईज दो बिल्डिंग दिख रही है।

और सुरज निकलता हुआ नजर आ रहा है। आसमान बहुत सुन्दर लग रहा है। पूरा व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।

घरो में लोग रहते हैं तो बाहर उनकी कार्स खड़ी हुई हैं और शाम का मौसम हो रहा है।